सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है जिसमें बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे--

सामने एक बड़ा घर दिख रहा है जो थोड़े ग्रीन से कलर का है और ऊपर उसमें विवाह भवन सत्यम--

सामने एक दुकान दिख रही है जो पीले कलर की है ऊपर उसमें रेबो टैक्स होलसेल मोबाइल शॉप --

दिखाई दे रहे हैं सामने एक बड़ा ल लंबा घर चौड़ा घर दिख रहा है जिसमें--

ऊपर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें नर कटियागंज जंक्शन लिखा हुआ है।

ये तीलियां लगी हुई है इनमें से पानी नीचे गिर रहा है।

सामने एक ये लंबा लोहे का अ पाइप दिख रहा है जो डिजाइन वाला है।

ये ऊपर फेकने वाली लाइट लगी हुई हैं पीछे काले कलर के बहोत सारे बक्से रखे हुए हैं और पीछे --

लाल कलर का टेंट बना हुआ है जिसमें पीले कलर की पट्टी बनी हुई है।

टकिया रखा हुआ है नीचे बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं और ऊपर एक आदमी--

डायनो स्टिक लिखा हुआ है और दीवाल पर ऊपर सफ़ेद कलर है नीचे ग्रे कलर है और --

कलर की है जिसपे लाइट लगी हुईं हैं और सामने दीवाल पर--

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें ऊपर पीला पोस्टर लगा है जिसमें चंदन पान--